गार्डन है यहां पे पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं।

पेड़ है और दो आदमी अंदर गुफा के अंदर घुस रहे हैं।